दो चार डोम बने हुए है दो चार डोम मे ही बहुत सारी मल्टी बनी हुई है दो चार नीचे गार्डेन दिख रहे है स्विमिंग पूल सोसायटी का जो की बहुत अच्छा दिख रहा है स्विमिंग पूल बना हुआ दिख रहा है सोसायटी का जो की बहुत ही बड़िया बहुत ही सुंदर लग--

जैसा की हम देख सकते है सामने बहुत है सारे माल्तीय बानी है माल्तीय --

पीली कलर की इसमे जाली लगी हुई है जो की लाल कलर की लगी हुई है जो की बहुत ही बढ़िया दिख रही है पेड़ दिख रहे खजुर का दिख रहा है सामने पहाड--

जैसे की हम देख सकते है सामने एक बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है बहुत ही प्यारा नजारा दिख रहा है हम देख सकते है सामने हमको अह बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल दिख रहा है स्विमिंग पूल में नाव रखी हुई दिख रही बड़ी सी।

जैसा की हम देख सकते है सामने बहुत सुदर दिख रहा है बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है गार्डन दिख रहा है गार्डन मे हमको झूला बना हुआ दिख रहा है झूले के अदर कुछ लोग भी बैठे हुए दिख रहा है जोकि गोल झूला घूमता जिसमे--

दिख रहे पीछे हमे कुछ मट्टी दिख राही है इसमे पीली दिखरी है सफ़ेद दिख रही है ऊपर खुला हुआ आसमान दिख रहा है को की बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर दी--